काफ़ी सारे सामने फ्रूट्स रखे हुए हैं फल रखे हुए हैं सब्जी रखी हुई हैं एंड कुछ पॉलिथिंस मे रखे हुए हैं तराजू दिख रहा है।

लाइट्स पड़ रही है टेबल्स में।

दूसरी तरफ ग्राउंड मे घांस दिख रही है ग्राउंड का कलर लाल है ग्राउंड में बाउंड्री वाल बनी हुई है बाउंड्री के ठीक बाहर पेड़ दिख रहे हैं।

टाइल्स दिख रही है दिवाले दिख रही है डिफरेंट कलर के पेट्स --